इस इमेज में हमे बहोत सी महिलाये नजर आ रही हैं। फेन नजर आ रहे हैं। कुछ पुरुष नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में हमें पानी नजर आ रहा है। पेड़ नजर आ रहे हैं। पवन चक्की नजर आ रही है।

इस इमेज हमें एक ऐरोप्लेन दिख रहा है। जिसपे इंडिगो लिखा दिख रहा है। बहोत से व्यक्ति नजर आ रहे हैं।

पीछे कुछ व्यक्ति काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ऊपर लाइटिंग लगी हुई नजर आ रही हैं।

जिनका कलर जामुनी दिख रहा है। एक व्यक्ति दिख रहा है जोकि खड़ा हुआ है। जिसने लाल कलर की टीशर्ट पहनी हुई है।